और यहाँ पर खिड़की के अंदर हमें बाहर यहाँ पर हमें बे भी दिख रहे है पेड़ भी दिख रहे है उनकी पत्तियाँ भी दिख रही है और बहोत सारी चीजें धरी है यहाँ पर और यहाँ पर वो कुछ सिखा रही हैं।

बाल्टी है उसमे कुछ डरा है और यहाँ पर वोह बुरुश कलर का तो अ यहाँ पर ऊपर कुछ हमें बुरुश दो तीन बुरुश दिख रहे है जो कि यहाँ पर एक सफ़ेद कलर का यहाँ पर् कुछ दिख रहा है।